उस पर पेंट भी होने वाला है जो कि जरूरी है स्कूल की बनावट दिखाने के लिए आसपास पेड़ दिखे हैं।

और पहाड़ी पहाड़ पत्थरों से बने हुए हैं और लोग यहां पर फोटो तस्वीरे खींच रहे हैं और घूम रहे हैं और दिन का सा समय है। उसमें थोड़े-थोड़े छोटी-छोटी घाँसे उगी हुई हैं और लोग खुश हैं और घूम रहे हैं बहुत ज्यादा।

देखने पर पता चलता है कि ये एक कपड़ों की दुकान है महिला कपड़ों की दुकान है और ये जो पुतला खड़ा है ये एक ऑरेंज कलर के कपड़े पहने हैं महिला ने पुतले ने।

दो बच्चे हैं ये किसी चीज की विजेता का शुभारंभ बना रहे हैं और पीछे मूड़ा रखा हुआ है पीछे बैलून लगे हुए हैं दीवार पर बहुत सुंदर है बैकग्राउंड ।

और गाजर और बहुत सारी सब्जियां हैं। अन्य सब्ज़ियां हैं बहुत सारी ज्यादा सब्ज़ियां हैं बहुत ही लजीज़ हैं ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद हैं।

महिलाएं हमें सामने दिख रही हैं ये चार महिलाओं ने लाल रंग के और नीले रंग के वस वास्त वस्त्र पहने हैं।